यहाँ पर हम देख सकते हैं बोहोत सारे काँच के दरवाजे भी बने हुए हैं और यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के हम आयटम्स भी देख सकते हैं जैसे कि अं ओइल अ कुरकुरे इत्यादि। यहाँ पर हम अंदर की तरफ देख सकते हैं बोहोत सारे अलग-अलग प्रकार के आयटम्स रखे --

दिय गए पिक्चर में हम देख सकते है यहाँ पर एक शॉप बनी हुई है देखने से ये किराना शॉप लग रही है यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के आयटम्स भी रखे हुए हैं।

दी गयी हुई पिच्चर में देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉल में एक बोहोत ही बड़ा हॉल बना हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं बोहोत सारे हैंगर्स पे बोहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।